नदी और नदी या समुन्द्र के किसी बन्दरगा का --

टाइल्स बिछाने की पहली प्रक्रिया में हैं।

दुकान सबसे बड़ी सबसे अच्छा चीज़ इसमें ये है जो ये ख़राब टायर हैं उसको कलर कर के बैठने का व्यवस्था किया गया हैं प्रेस्टीज --

खुली छत पर खुली छत के योगा करते कुछ विद्यार्थी या फिर कुछ युवक या फिर कुछ लोग योग आज क योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया हैं करो योग रहो निरोग।

किसी पुराने इमारत के कुछ शीलाखंड जो अभी एक दर्शनीय और पार्क स्थल में बदल गए हैं।

नदी का एक किनारा जहाॅं पे एक नदी का एक किनारा जहाॅं पे कुछ ए- --